यहाँ पर डोस दिखाई दे रहे है पिंचेस दिखाई दे रहे है।

ये एक के_एफ_सी रेस्टोरेंट है यहाँ पर हम--

ये एक मार्केट है यहाँ पर कितने सारे लोग खड़े है यहाँ पर ग्रेप्स --

और उधर अ बहुत सारे लाइट्स है और ये शाम का वक्त है।

आ रह सकते है जैसा एक दिन या दो दिन लेकर रह सकते है जैसे बाहर घूमने जाते है।

ये एक कार की शोरूम है यहाँ पर दो कार दिख रही है एक रेड कार एक व्हाइट कार और ये--

और यहाँ पर रेड कार पे व्हाइट लाइट्स दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर हम जो भी चाहिए वो ले सकते है और गिफ्टस कर सकते है।

वो चल रहा है यहाँ पे टँकी है।

अ चिपसेस आइस यहाँ सब कुछ मिल सकता है यहाँ पर बहुत कुछ ले सकते है।

ये एक ऑफिस पेस है यहाँ पर लैपटॉप दिखाई दे रहा है।

ऑफिस कलर सोफ़ा है यहाँ पर झाड दिखाई दे रहे है जैसा--

अ शोर शोर जहाड है ना ऐसा दिखाई दे रहा है।

पार्किंग एरिया दिखाई दे रहा है पार्किंग एरिया मे टेम्पो कार दिखाई दे रही है यहाँ पर एक--

लोगों सब कुछ मिल सकते है यहाँ पर हम खरीदारी कर सकते है यहाँ बहुत सारे कलेकशन्स है यहाँ लाइट्स है यहाँ पर एक--

अ रेल हमको हम कहाँ जाना वहाँ लेके जाके छोड़ती है।

हम बहुत दूर जा सकते है रेल्वे हम बहुत दूर सफर कर सकते है।

ये एक वॉच स्टोर की दुकान है।

और यहाँ बहुत सारे अलग अलग वॉचेस है।

और एक आदमी दिख रहा है यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग पॉट्स है यहाँ पर बहुत प्यारे लाइट्स है।

छोटों की साइकिल भी मिलती है और बड़ों की साइकिल भी मिलती है।

और यहाँ पर मिरर है हम यहाँ पर देख सकते हैं।

और यहाँ पर अह डोर दिखाई दे रहा है ये और अह यहाँ पर कुछ अ लगेजेस दिखाई दे रहे हैं दो बैग्स हैं ।

और यहाँ हम खेल नहीं सकते क्योंकि ये वाटर बहुत जोर से फ्लो होता है।

यहाँ पर कोई भी जाने का चांस नहीं है यहाँ पर सनराइज बहुत प्यारा दिख रहा है और यहाँ पर हम--

ए_सी है और यहाँ पर प्रिंटिंग मशीन भी है और यहाँ पर हम जेरोक्स कर सकते हैं।

देख रहे हैं ये अ पियानो अह क्लासेस का नाम है आरियन डांस स्टूडियो --

ये एक आई_सी_यू रूम है यहाँ पर बीमार लोग को सिस्टर्स चेक करते हैं यहाँ पर--